पीछे की ओर एक दुकान का दरवाजा जैसा लग रहा है और अंदर में कुछ सामान दिख रहा है पास में एक व्यक्ति लाल कलर का टी-शर्ट पहने खड़ा है जो अपने मो--

मकान के सामने एक साइकिल खड़ी हुई है और सफेद कलर का एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है पास में हरे रंग का एक बहुत बड़ा झाड़ भी दिख रहा--

स्टेट बैंक ए.टी.एम इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है नीचे एक जनरल की पट्टी पर एक काँच का दरवाजा दिख रहा है जो बंद हैं।